यहाँ पे हमें एक कपड़े की दुकान दिख रहे है जिसमें जेन्ट्स या लड़की के कपड़े बिकते है और इसमें तरह-तरह के कपड़े टांगे है।

और यहाँ पे टेबल्स कुर्सी लगी हुई है। डाईनिग टेबल भी रखे हुए हैं और डी.जे. भी बंधे हुए है और--

दो जेन्ट्स है जोकि बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे लाइट्स लगी हुई है वहां पे कई जेन्ट्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पे हमें बहुत भीड़ दिख रही है और इसमें मंदिल भी लगी हुई है और यहाँ पे दुकांस भी दिख रहे हैं |